भी है और रोबोट है क्लिफ है।

ये पाउडर है पंखा है लाइट है अच्छा लग रहा है देखने में--

यहां पर बहोत सारे बाइक लगे हुए हैं। टो टो है।

यहां पे मंदिर है दो मंजिले का।

और खेत भी है पानी खेत में थोरा थोरा पानी दिख रहा है।

और नीचे से सीढ़ी है येलो कलर का डीजे है।

यहां पे बहोत सारा सुंदर घर दिख रहा है।

यहां पे स्टेज शो होने जा रहा है।

बहोत सुंदर लग रहे हैं देखने में।

और यह चाय पत्ती बहोत अछा है।

बोहोत सारे बच्चे बोहोत मस्ती कर रहे हैं यहां पे।